ए.सी. लगी हुई है। यहाँ पे स्प्रे की बोटल वगेरा रखी हुई है।

और पटाखों के जो बॉक्स है उनका कलर पीला दिखाई दे रहा हैं।

इस्कीन कलर होता है और उसपे काफी सारी मि --

एम्पू की बोटलें रखी हुई हैं। एक फोटो लगा हैं जिसपे --